आस पास बहोत सारे लोग टहलते दिखाई दे रहे हैं।

इसके आसपास बहुत सारे पेड़ लगे दिखाई दे रहे हैं।

पानी भरा कुछ बॉक्स में पानी भी भरा दिखाई दे रहा है।

आस पास गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही है।

सामने की तरफ एक तराजू भी रखा दिखाई दे रहा है।